यहाँ जिम का तस्वीर है जिम का अंदर का दृश्य दिखाया गया है जहां पे जिम के लिए मशीन रखा हुआ है ब्लैक कलर का और ढेर सारा मशीन है।

और आगे एक दीवाल पर पोस्टर लगा हुआ है उसके सामने एक लड़का है।

और एक सब्जी है और एक कटोरे पे कुछ सब्जी है सलाद है।

सभी नीचे की ओर एक हाथ झुकाये हुए है और यहाँ का नजारा --

इस तस्वीर मे दो लड़किया डास करती हुई नजर आ रही है जिसमे से इक लड़की आगे की तरफ देख रही है हाथ उठाई हुई है।

यहा सामने तीन लड़किया नजर आ रही है। जो वाइट सूट पहनी है और रेड दुपट्टा ली हुई है।

और दुकान के अंदर काफी सारे समान रखे हुए हैं पेटी पर सामने राइट साइड में बोरा पर कुछ समान रखा हुआ है एक बाइक दिख रहा है साईकल --